यह तस्वीर एक हरियाली से भरी सड़क की है सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हैं।

यहां का वातावरण शुद्ध और प्राकृतिक महसूस हो रहा है।

गोल घूमने वाली कार राइड में लोग बैठे हैं कई लोग मेले में घूमते नजर आ रहे हैं।

एक ऑटो रिक्शा भी सड़क पर खड़ा है कुछ लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक स्टेशनरी की दुकान दिख रही है दुकान का नाम मानसरोवर स्टेशनरी है।

पीछे एक दीवार पर चित्रकारी की हुई है जमीन पर मिट्टी और कुछ पत्ते फैले हुए हैं।

इस तस्वीर में विशाखा डेयरी पार्लर नाम की एक डेयरी दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान के सामने कई लोग खड़े होकर ऑर्डर कर रहे हैं कुछ लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं जबकि कुछ पहले से ऑर्डर दे चुके हैं।

पक्की ईटों की एक पगडंडी बगीचे के बीच से होकर गुजर रही है।

बाई ओर कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं बगीचे में एक स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है।

दुकान के सामने एक बच्चा शीशे के काउंटर से कुछ देख रहा है।

स्विमिंग पूल के एक साइड में दो वाहन खड़े हैं।

इस मम्मम स्विमिंग पूल के बाहर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर कुछ बोरी और कपड़े भी बिखरे हुए हैं यह स्थान दीवारों से घिरा हुआ है।

यह तस्वीर एक सुंदर स्विमिंग पूल की है जिसमें बच्चे मस्ती कर रहे हैं।

घर के बाहरी हिस्से में छत और पंखा दिखाई दे रहा है।

इन आलमारियों में मोबाइल चार्जर पावर बैंक और अन्य एक्सेसरीज रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक औद्योगिक परिसर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है गेट पर अशोक लीलैंड का बोर्ड लगा हुआ है।

दुकान के बीच में एक खाली रास्ता है जो दुकान की बाहर की ओर जाता है।

कक्षा में दीवारों पर पंखे और एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है।